इस फोटो मे मुझे घर दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे गैरीज की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो मे मुझे मूर्तियां दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे गोदाम दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे मैदान दिखाई दे रहा है।